यहाँ पे दिख रहा है सामने मैंदान है और सामने एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरा आदमी उसका पैर ऊंचा करके उसके पांव पर रखके दोनों हाथों से --

ये पकड़े हुए हैं। उनके पीछे दो लड़के खड़े हैं जो एक सफेद शर्ट एक टी-शर्ट पहने हुए है।

सी है उसके ऊपर भी तीन तस्वीर लटकी --

दो बेंच डली हुई हैं और सामने ट्रेन के बगल में एक लड़का --